और ब्लैक कलर का है और पीछे बहुत से सामान डाले हुए हैं।

वो आदमी चेक कलर चेक का शर्ट पहना हुआ है कलर कलर का --

बाहर है वहां पर एक बड़ा कार जा रहा है और बहुत से पीछे पेड़ लगे हुए है--

अ कुछ खाने का मेन्यू दिखाई दे रहा है.

और और आसमान दिखाई दे रहा है नीले कलर का और यहां पर नारियल का झाड़ भी रखा गया है.

ये लगाया गया है और यहां पर एक सामियार है ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना हुआ--

और पीछे बहुत से पेड़ रखे गए हैं और कुछ लोग खड़के भी सुन रहे हैं और आसमान दिखाई दे रहा है नीले कलर का--

एक छोटा सा चाय का किनारे का दुकान है ऊपर ऊपर चाय का बैनर लगाया गया है और नीचे एक बैनर पर अ एक फोन पे का --

अ राउंड राउंड करके दो रखा गया है उसके ऊपर वाइट कलर सॉस डाला गया है उसके बाजू ग्रीन कलर का चटनी ह--

और शेल्फ पर बहुत से बुक रखे गए हैं टेबल पर भी रखे गए हैं कुछ लोग नीचे बैठे--

छोटासा टेबल पर अ एक चेयर पर खाना खा रहे हैं ऊपर फ्लैग की तरह अ ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन कलर का बलून सजाया गया है और को स्टार लटकाया--

और छोटा-छोटा पैर लगाए गए हैं और इलेक्ट्रिक खंबा है जो चारों तरफ जा रहे है।

अ तकिया डाला हुआ है छोटा सा गोवा ब्रिज का व्यू है चार डोर खोला हुआ है.

एक कूलर रखा गया है एक छोटा सा ब्राउन कलर का टेबल और एक प्लास्टिक --

और अगेटी छोटा सा अगेटी और उस पर पेड़ लगाए गए हैं--

अ ऐसा करके लिखा गया है ऊपर और एक एक तीन बच्चे एक एक मोम--

और वो अ ओ चार विंडोस है.

प्लेन खड़ा हुआ है यहां पर छोटा-छोटा ऑरेंज कलर का--

और यहां पर इंडिगो का एक बड़ा सा प्लेन है वाइट --

एक मंदिर की एंट्रेंस है यहां पर छोटा-छोटा वाइट टाइल्स डाला हुआ है एक आदमी रेड --

अ अंदर की तरफ जा रहा है और ओ येलो कलर का पेंट मारा हुआ है एक आदमी बाहर की तरफ ब्लैक एंड --

ये गार्डन है यहां पर बड़े-बड़े पेड़ लगे गए हैं--

अ वायरिंग जा रही है। वायरिंग का एक खंभा है लगाया हुआ है करंट का और पीछे एक लाइट येलो कलर का एक घर बना गया है और यहां--

यहां पर ब्लैक कलर का कार पार्क किया हुआ है यहां वाइट एंड --

अह वो वुड का चा चार की तरह स्टूल डाला गया है।

ये ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर अह बड़े बड़े कंबे रखे गए हैं कंबे की तरह बॉक्स शेप में बनाया गया है छोटे छोटे विंडोज हैं।

और कुछ अ छोटा सा एक दो तीन लाइट डाला गया है छोटा सा--

और यहां पर अ मशीनस रखे गए हैं.

और ये ट्वेंटी फोर कैरेट करके लिखा गया है टू इन वन करके है और--